सामने की तरफ मुझे एक बिल्डिंग नजर आ रही है आपके पीछे एक और बिल्डिंग नजर आ रहा है बिल्डिंग का कलर क्रीम कलर का नजर आता है इसके ऊपर बॉर्डर और लाइन वगैरा ब्राउन कलर का नजर रहा है सामने की तरफ से के रस्ते नजर आ--

सामने की तरफ मुझे एक मशीन नजर आ रहा है जिसके ऊपर एक लड़का लेटा हुआ हैनजर आ रहा है एप्स की मशीन मारते हुए नजर आ रहा है सामने की तरफ बहुत सारे मशीन नजर आ रही है प्लान रोड वगैरा नजर आ रही है उसके ऊपर कुछ--

सामने की तरफ़ मुझे एक नज़र आ रहा है साइकिल वगेरा नज़र आ रही है मशीन वगेरा नज़र आ रही सामने काँच नज़र आ रहा है बायीं साइड खिड़की वगेरा नज़र आ रही। लोहे की खिड़की नज़र आ रही है।